जो कि बस पर बहुत से आदमी बैठे हैं।

यह एक बहोत सुंदर स्टूल है।

और नीचे एक दुकान में बहुत सा बिजली का सामान रखा हुआ है।

और औरत ने साड़ी पहन रखी है।

और कुछ इंग्लिश में लिखा है बॉक्स ऑफिस ।

और इसमें आइसक्रीम रखी हुई है।